बाएं साइड में कुछ बुक्स है पेन के साथ दाएं साइड में एक छोटा चूल्हा दिख रहा है।

कर सकता हैं इससे ज्यादा जोर लगता --

मजा आ जाता हैं उसको नहाने के बाद ।

गर्मी में लोग इसे ज्यादातर तौर पे खेलते है।

वोडाफोन का बोर्ड लगा है ऊपर एर्टल फॉर जी का बोर्ड लगा है। बगल में इंडी-कैश का ए.टी.एम. है ।